यह तस्वीर एक वेडिंग फंक्शन की शादी के समारोह का लग रहा हैं इसमें कई सारे कुर्सी का व्यवस्था किया गया है।

कुर्सी और मेज रखे हुए हैं और पीछे कही सारे लोग खड़े हैं जो शादी देखने के लिए आए हैं।

यह एक छत की तस्वीर है छत के ऊपर कपड़े सूखने के लिए दिया हुआ है।